मे मुझे एएक गेट दिखाई दे रहा है।

वे मुझे पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे लोग दिखाइ दे रहे है।

चित्र मे मुझे एक रोड दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रही है।